ये फोटो एक मस्जिद की है इसमें तीन दुर्ग बने है।

यहां पर नीचे पता लिखा है चौका बाग बाईप बाईपास रोड ललितपुर लिखा हुआ है।

यहां पर कुछ छोटी छोटी झाड़ियां भी है झाड़ियां सभी हरी भरी है।